और बहुत से बोर्ड लगे लगे हुए है जिसपे एक बैंक भी दिख रहा है हमें लिखा हुआ एचडीएफसी बैंक --

और पुलिया दिख रही हैं सामने की तरफ पेड़ - पौधे दिख रहे हैं खुला आसमान दिख रहा हैं।

पिकअप दिख रही सामने वाइट कलर की खिड़की दिख रही है सामने पेड़-पौधे दिख रहा हैं।